यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से पेड़ पौधों की कटिंग करके --

ये किसी मकान के गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रही है जहां पर एक जगह पे टाइले लगी हुई है।

ये एक पेट्रोल पंप के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये किसी बिल्डिंग के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जहां पर बहोत सारे आदमी बैठकर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं।

सफेद और पीले कलर का पेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है।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

इसी के पास में बंजारन के नाम से भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक बास्केट वाला लोहे का --

ये एक नाइट में ली हुई तस्वीर है यहां पर एक चाय की केतली बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक मैदान की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी लड़के खड़े हुए हैं।